जो कि ऊपर रास्ता जा रहा है और एक शटर --

अलग-अलग दुकाने है यहां पे ऊपर नीचे। अभी यहां पे--

मुझे सामने भी बहोत सारी दुकानें दिख रही हैं।

वृक्ष के ऊपर लाइटे लगाई हुई हैं।

बहोत अच्छा लग रहा है और--

और सभी लोग अंदर को गुफा में जा रहे हैं।

ये एक बार बहोत बड़ी छठ पूजा चल रही है जिसमें औरतों ने साड़ियां पहनी हुई हैं और--

बहुत सुंदर ये लग रहे हैं और--

जिओ फोन का इसमें पाउच लगा हुआ है अच्छा लग रहा है।

ये एक वंडरलैंड पार्क है जिसमें स्विमिंग पूल है और झूले लगे हुए हैं।

बहुत ही सुंदर टाट बिछे हुए है डेकोरेशन बहुत ही अच्छी की हुई है।

सामने खंभे दिख रहे हैं बहुत सुंदर और बहुत ही बड़ा ये--

बच्चे ये बहुत ही सुंदर यहां डांस कर रहे हैं उन्होंने बहुत ही सुंदर कपड़े पहने हुए हैं बहुत ही अच्छी लड़कियां --

अ ये बहोत बड़ी फैक्ट्री है जिसमें बहोत ज्यादा काम हो रहा है और--

और सभी अपना ध्यान से कंप्यूटर चला रे हैं और अपना--

ये बहोत ही बड़ा कपड़ो का शोरूम है बहोत सुंदर से कपड़े--